इस तस्वीर में मुझे कमरा का आधा हिस्सा दिखाया गया हैं।

यहां आठ बच्चे बैठे हुए हैं।

के बाहर पोस्टर भी है।

यहां पर बहुत सारे गोदरेज रखे गए हैं।

और कुछ मूर्ति लोग का सकल को भी ब्लर किया गया है।

और उस आईने मे बहुत सारे लोग भी दिख रहे--

और एक कैची भी दिख रही है।

मुझे इस तस्वीर में घर दिख रहा है जो ब्लू और ग्रे कलर की है।

बहुत सारे चेयर दिख रहे है।

और एक फॉदर भी दिख रहे है।

और ऊपर हेलीकॉप्टर भी दिख रही है।

यहां पे बहुत सारे कपड़े हैंगर में टंगया हुआ है।

ये लंबे लंबे पेर भी दिख रहे है।

मुझे लाइट्स भी ऑन दिख रहे है।

और बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी रखे हुए गए है।

इस तस्वीर में मुझे बड़ा टंकी भी दिख रही है।

रंग बिरंगी फूल दिख रही है।

और नीचे लाल रंग की कारपेट भी दिख रही है।

इसके सीधे एक दरवाजा है।

इस तस्वीर पर मुझे एक दुकान दिखाया गया है।

मुझे इस तस्वीर में एक जगह दिख रही है।

इस शॉप में ग्लास लगाया गया हैं।